तस्वीर में मुझे दिखाई दे रहा है कि यह किसी समुन्द्र एवं नदी की तस्वीर है जिसमे मुझे एक दिखाई दे रहा है जो काले रंग और सफेद रंग की है।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

घास दिखाई दे रहे हैं तथा इसमे मुझे बोहोत सारे पेड़-पौधे एवं नारियल के पेड़ एवं आम के पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं। इसमे मुझे नीले कलर के बादल भी दिखाई दे --

इस कार्यालय मे बोहोत सारे दरवाजे दिखाई दे रहे हैं तथा कुछ खिड़कियाँ भी दिखाई दे रही हैं ए एवं कुछ रोशनदान भी इसमे मुझे बोहोत सारी बाइके भी दिखाई दे रही हैं।

ऊपर की ओर लाइट जलती हुई दिखाई दे रही है इस तस्वीर मे मुझे पानी की बोटल दिखाई दे रहा है जिसका रंग गुलाबी है।

यह तस्वीर मे मुझे दिखाई दे रहा हैकी यह एक आदमी बैठा हुआ है तथा यह किसी रेस्टोरेंट होटल की तस्वीर है।

इस तस्वीर में मुझे कुछ वयक्ति दिखाई दे रहे है जिन्होंने अपना हॉस्पिटल में है जिनमे हर रूम में खड़े हुए है इसमें मुझे सफ़ेद कलर की दीवाले काउंटरे एवं छज्जे नज़र आ रहे है।

तथा कुछ स्कूटीयां भी खड़ी हुई हैं। इसमे मुझे स्टील की रेलिंग दिखाई दे रही है तथा कुछ सीढ़ियाँ दिखाई दे रही हैं। मुझे इनकी दीवाल का रंग सफेद दिखाई दे रहा है तथा एक पेड़ दिखा --

तस्वीर में मुझे दिखाई दे रहा है की यह किसी जीम की तस्वीर है जिसमे मुझे एक तकिया दिखाई दे रहा है जिसमे मारते है इसमें मुझे लाल कलर की उ गू बजे नज़र आ रही है।

इस तस्वीर मे मुझे दिखाई दे रहा है की यहाँ सफेद कलर के बदल तथा मुझे इस तस्वीर मे एक साइकल दिखाई रही है।

मुझे दिखाई दे रहा है की यहाँ बहुत सारे वयक्ति खड़े होकर इस दुकान में ए--एक से एक सरस्वती जेनरल स्टोर की सामने देख रहे है जिसमे बहुत सारी सामने रखी हुई है।

तस्वीर में मुझे दिखाई दे रहा है की यह किसी घर की तस्वीर है जिसमें बहुत सारी दरवाजे खिड़कियाँ दिखाई दे रही है इसमें मुझे चैनल गेट भी दिखाई दे रहा है।

मुझे दिखाई दे रहा है की यहाँ किसी स्कूल चंदता कार्यालय केंद्र का फोटो है जिसमे मुझे बहोत सारी गाड़ियाँ एवं कारे टू व्हीलर दिखाई दे रही है।

इस तस्वीर में मुझे दिखाई दे रहा है यह किसी संस्था कार्यालय की तस्वीर है जिसमें मुझे बहुत सारे पेड़-पौधे दिखाई दे रहे--

फिर भी मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ बहुत सारे जीम करने वाले यंत्र रखे हुए है इसमें मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ एक पीले कलर का लाइट जल रहा --